और छोटे छोटे लाइट जल रहे हैं छत पर और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

और टेबल में भी बहुत सारे कपड़े घड़ी लगा के रखे गए हैं।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

चित्र में एक बेसमेंट हैं जहां पे बहुत सारे कार --

पेड़े लगे हुए है और चट्टानों के ऊपर से झरने नीचे गिर रहे नदी की ओर और --

गमले रखे गए हैं अंदर में कांच की खिड़की दिख रही है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे बड़ा सा सैलून दिखाई दे रहा है।

जीसमें बहोत सारे टेबल और सोफा लगे हुए है।

झरने जैसे ही फिसल पिट्टी बनाए गए हैं।

और एक पेपर में एक इंक मशीन रखा गया है।